और यहां पर एक बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल और कुर्सी नजर आ र --

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ढेर सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।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

आस पास यहां पर कुछ पेड़ भी नजर आते हैं।

जहां पर ढेर सारे कपड़े टंगे दिखाई दे रहे है जो बहोत ही खूबसूरत लग रहे है।